और नीचे इंग्लिश टॉयलेट सीट दिखाई दे रही है काफी सारी और वॉश बेसिन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डिजाइन की टोटी भी दिखाई दे रही है यहां पर।

एक वॉश बेसिन लगा हुआ है नीचे की तरफ पत्थर लगा है दीवार पर वॉलपेपर लगा हुआ है ठीक है।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं डस्टबिन भी दिख रहा है।

काफी सारी बोतलें पड़ी हुई हैं यहां पर।

इस फोटो में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है यहां पर--

फर्श पत्थर का है दीवार सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में फर्श पे पत्थर डला हुआ है सामने दीवार है एक ए_सी लगा है काफी सारी फोटोस लगी है और--

और यहां पे फोटोग्राफी का काम चलता है चेयर रखी हुई हैं एक--

इस फोटो में दो कार दिखाई दे रही है। दोनों ब्लैक कलर की है। नीचे पत्थर डला हुआ है।

उपर लाइटें लगी हैं सफेद क रंग का पेंट किया हुआ है।

टेबल के ऊपर कुछ पौधे रखे हुए हैं।

बैठने के लिए जीग जगह दे रखी है मिट्टी है ईट है।

चेयर्स लगी हुई हैं दीवार है जो सफेद रंग की है।

इस फोटो में खेत दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ काफी सारी गाड़ियां दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और यहां पे तिरंगे मतलब झंडे लगे हुए हैं एक लाल रंग का है एक पर्पल एक ग्रीन कलर का है।

सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है। फर्श पर पत्थर लगा है। एक यहां पर अलमारी दिख रही है बड़ी सी अलमारी है।

इस तरफ काफी सारे लड़के खड़े हुए हैं।

म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट वो रखे हैं दीवार पे घड़ी लगी है आप यहां यहां पे देखो पियानो रखा हुआ है।

पेड़ पौधे हैं बहोत सारे बहोत सारे लोग भी हैं और यहां पे--

इस फोटो में तीन झोपड़पट्टी दिख रहे हैं बाहर कर्टन लगे हुए है हैं लाइटे लगी है कुछ पेड़ पौधे है पीछे इटे हैं।

हैं और नाव हर घर के बाहर फ्लावर्स लगे हैं एक नहीं है डोरमैट लगा हुआ है झोपड़ पट्टों के बाहर।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बहोत सारे बच्चे लड़के हैं लड़कियां भी है ठीक है यहां पे एक्सरसाइज कर रहे--

चार्जर हो गए ये सब ये मिलता है ठीक है ना--

काफी सारे लड़के हैं और एक लड़की है। रात का समय है। एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। अंदर येलो कलर की लाइट जल रही है।

बार बाहर को बोर्ड भी लगा हुआ पतंजलि का।

और हरियाली है बहोत यहां पर।